और लोहे की रेलिंग दिखाई दे रही है|

लाइट दिख रही है। मालाएं लटकी हुई नजर आ रही है ।

जमीन दिखाई दे रही है।

इस इमेज में हमें बहुत से लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

कुछ बोर्ड लगे दिख रहे है ।

कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। नीले कलर का पाल दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने अपने फेस पर कुछ लगाया हुआ है।